बाहर में दो पुरुष नजर आ रहे हैं और तीन चार बाइक रखे गए हैं।

एक रेड कलर का डस्टबिन है बाहर पेड़ है।

चप्पल सजाकर रखा गया है बहुत सारे कार्टून हैं।

ग्राउंड के अंदर कुछ लड़के दौड़ रहे हैं।

एक बाइक नजर आ रहा--

दो पुरुष नजर आ रहे है।

यह एक बड़ा सा दुकान है जिसके ऊपर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारे स्कूटी बाइक है।

पास बड़े बड़े पेड़ है।

बहोत सारे लोग मौजूद है।

छत पे कुछ कपड़े पसारे गए हैं।

छोटे छोटे पेड़ उगे है।

यह एक बड़ा सा चट्टान है इस पे काई लगा है।

कुछ गाड़ियां चल रही है।

बहोत सारे बड़े बड़े पे--

लाल रंग की बाइक खड़ी है दूर दूर कुछ घर नजर आ रहे हैं।

एक छोटा सा दुकान है।

एक घर नजर आ रहा--

गेट का रंग हरा है।